सड़क को क्रॉस कर रहे है कार बहुत ज्यादा कार हैं।

अंकल हाथ में कुछ लिए हैं और जो बाल कटाने अंकल शीशा शीशा को देख रहे हैं।

जो में साइड में ग्रीन कलर का रास्ता ग्रीन कलर से रास्ता हो कर गया है रात का नजारा है।

और उधर ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा है वय--

इधर शायद फलवल का दुकान हो सकता है यहां बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं चार पांच होंगे और भी हो सकते हैं साइड में बाइक खड़ा हुआ है एक बैठे हैं।

एक शायद बैठे है उनके साइड पर खड़े है एक अंकल तो इधर ही दिख रहॆ है मतलब देख रहे है बैग पकड़े है रेड कलर में--

डेकोरेशन भी बड़े हुए हैं जिसमें रेड और ग्रीन कलर और भी कलर है इसका सजावट किए हैं ।

ये क्या फंक्शन वगेरा हो रहा होगा समझ नहीं आ रहा है।

और पानी है बड़ा सा घर जैसे दिख रहा है।

और यहाँ पुजारी जी है दर्शन करने के लिए भी आये है बड़ा सा पेड़ हैं।